यह जो बिलडिंग दिखाई दे रही है काफ़ी सुन्दर है यहाँ पे ऐसीयाँ लगी हुई है आजू बाजु के नजारे वहाँ पे बहुत सुन्दर है।

यह मस्जिद है यहाँ लोग आए है दर्शन के लिए काफ़ी लोगो की भीड़ भी नज़र आ रही है यहाँ पे यहाँ दर्शन के लिए आते है यहाँ पे आने से लोंगो की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है इसलिए काफ़ी लोग यहाँ पे चलते आते है चल कर आते है।